यहाँ पे कपड़ा सस्ते दामों में मिलता है।

यहाँ पे मछली ताजे ताजे मिलते हैं और यहाँ पे मछली कई प्रकार के मिलते हैं।

और इसके चारो ओर पट्टियों बड़े-बड़े पहाड़ों से ढका हुआ है।

यह एक बुक का दुकान है।

इस्टेशन जी.ओ.आई.एम. है। यह बॉडी --